ऊपर नीला आसमान है। आसमान में व्हाइट कलर के बादल छाए हुए हैं।

यह एक मॉल या दुकान की तस्वीरें लग रही है यहां पे कपड़े रखे गए हैं।

लोग मास्क लगाए हुए हैं कुछ लड़कियां जा रही हैं।

जो डिजाइन पिलर्स और डेकोरेटिव रूफ के साथ है।

लाइट्स बहुत सारे ऑन है डेकोरेसन यहां का बहोत अच्छा है और लीची बल्ब लगाए हुये हैं।

यह एक छोटे सा रेस्टोरेंट है।

बहुत सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

जहां पे कुछ पेड़ पौधे हैं।

यह एक पार्किंग एरिया लग रहा है यहां पे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

मंच की दीवारों पर पीछे कुछ पोस्टर में कुछ आदमियों की तस्वीर टंगी हुई है एक आदमी बैठा है।

फोटो में एक मैदान नजर आ रहा है जहां पे बहुत सारे ट्री है ।

यहां पे एक व्हाइट कलर का बिल्डिंग भी नजर आ रहा है।

यहां छोटे मोटे घास भी है।

जहां पे दो लड़की का स्टेचू है जिसमें एक लड़की ने पिंक कलर के टॉप और जींस पहने हुए ह--

एक सूट टंगा हुआ है।

पीछे स्टार बना हुआ है।

और अलग- अलग स्टैचू टांग बाहर रखे गए हैं।

यह दुकान में बाहर बाल्टी में झाड़ू रखे गए हैं।

ऊपर आसमान में काले रंग के बादल नजर आ रहे हैं।

यहां पे बोर्ड पर सैनिक साइकिल मार्ट लिखा हुआ है।

यह शायद एक चर्च का फोटो है जो कि रात में लिया गया है।

पेड़- पौधे भी दिख रहे हैं कुछ आदमिया भी दिख रही है यहां पे शायद कोई उत्सव है|

छोटे छोटे पहाड़ है और अह एक पहारी भी बरी सी दिख रही है।

ऊपर आसमान साफ है लेकिन कुछ बादल भी दिखाई दे रहे हैं।

इसका नाम टारगेट पैलेस रखा गया है।

यह एक सैलून की फोटो है जहा पे नाई है।

जहां पे डॉक्टर का नाम के पल्लवी है।

आदमियां खरे है और आपस में बात चीत कर रहे हैं।